हरे पौधे पहाड़ियों से दिखाई दे रहे हैं पहाड़ो से पौधे वैगरह है पानी में नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे कपड़े लटके हुये दिखायी दे रही है और हमें ये पर लोहै की रैक बनी हुई देखी दे रही है बहुत सारी वायर जाती हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बोहोत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के दीवाल का कलर हमे यहाँ पर सफेद नजर आ रहा है बिल्डिंग के ऊपर हम हमे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि --

वहां एक ठेला दिखाई दे रहा है जो कि नजर आ रहा है उसके अंदर मे बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जैसा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टीन का शेड दिखाई दे रहा है।